यह एक दुकान है यहां पर तरह तरह के समान दिखाई दे रहे--

नीचे में एक हरा रंग का टेबल दिखाई दे रहा है और एक बड़ा सा गद्दा दिखाई दे रहा है।

अगल बगल साइड में दिखाई दे रहा जिसका रंग गुलाबी और सफेद में--

वगैरह समान दिखाई दे रहा है और एक आदमी जो खड़ा है। कला रंग का पैंट पहना है और एक गैस दिखाई दे --

सामने में सीढ़ी दिखाई दे रहा है जो लाल रंग का है।

दो स्कूटी खड़ा है जो सफेद और काले रंग का दिख रहा--

औरत लोग चुनरी ओढ़ के पूजा कर रही है।

अ कुछ आदमी जो खाना खाते हुए दिख रहे--

सफेद और काला रंग का पैंट पहने चढ़ रहा है और तीन आदमी--

झाड़ू मार रहा है नीचे में बहोत सारा गंदगी दिखाई दे रहा--

पेपर ली है और कुछ आदमी जो पीछे में खड़े हैं और कुछ टेबल पे बैठे हुए दिखाई दे रहे--